जिस पर मेरर लगा हुआ है।

यह एक मॉल दिखाई दे रहा है यहां पर--

और जिम में काफी सारी वर्क आउट मशींस दिखाई दे रही--

और ये पॉट भी दिखाई दे रहा है।

वहां पर बहुत सारी घास दिखाई दे रही--

यहां पर एक ग्राउंड दिखाई दे रही है और घास भी दिखाई दे रही है।

यहां पर आसमान दिखाई दे रहा हैं आसमान पर बहुत सारे बादल छाए हुए हैं।

दीवार दिखाई दे रही है और बड़ा सा टेबल दिखाई दे रहा है।

और दो झोपड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।